सब अपना-अपना वर्क कर रहे हैं जैसे कि हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें भी यह होता है| वर्क करते हुए पाँच बच्चे नजर आ रहे हैं| सब अपने हिसाब में इसको और भी कुछ समझा सकते हैं।